सफेद रंग है और इस दुकान के अंदर अंधेरा भी काफी हैं उपर एक पंखा भी लगाया गया है।

और सीढ़ीयो पर चंढते समय सीढ़ीयो का रंग भी सफेद है और नीचे धूप भी लगी हुई है जो हरे रंग की है।

जोकि लाल पत्थर से बना हुआ है इसके पास में छोटे छोटे पौधे से डिजाइन भी किया हुआ है।

यह तस्वीर बीकानेर के अंबेडकर सर्किल की हैं।

यह तस्वीर एक कपड़ों के और बेडसीटों के दुकान की है जहां पर तकिये --

इसकी छत का रंग सफेद है और दीवार का रंग गुलाबी है इसका आदमी का चेहरा नहीं दिखाया गया है।

जिसके पास बाहर कारे पार्किंग की गयी है और दूसरे साइड बहोत सारी स्कूटी और बाइक भी पार्किंग की गयी है।